पेशेंट का तबीयत खराब है।

यहाँ बहोत अच्छा से होता है सब काम।

वाइट कलर का पेंट किया है यहाँ पे।

यहा का बिल्डिंग बहोत अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ ग्रोंड टाइप का बना हुआ है यहा पे छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगाये गए हैं।

यह झूला देखने में बहोत अच्छा लग रहा है यहा पे लाइट अर भी लगल है झुला में।

यहाँ पे झील है यहाँ पे पेड़-पौधे भी लगे हैं यहाँ का पेड़-पौधा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यह झील में --

यहां का नदी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पीछे में पेड़-पौधे है बहुत सारे बहुत अच्छे लग रहे है पेड़ |

यह किसी आदमी का घर है यहाँ पे बहुत सारे बाइक हैं यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी है।

यह दुकान है यह मॉल है यहां पे बहुत सारे कुर्ती मिल रहे है बच्चे का कपड़ा भी बच्चा का फ्रॉक मिल रहा है यहां पे साड़ी भी मिल रहा है।

यहाँ का गेंदा सब कलर का है ऑरेंज कलर का पीला कलर का यहाँ पे रोज का भी फुल लगाया गया है।